यहाँ लोग देखने आते हैं। पेंटिंग्स वगेरा भी बेचते हैं।

बैठे हुए व्यक्ति कंप्यूटर चला रहे हैं।

ये ज्यादा स्थान भी है बना हुआ।